ये चित्र एक ए_टी_एम का चित्र है जहाँ पर ए_टी_एम मशीन रखी हुए है ए_टी_एम मशीन जिससे पैसे निकाले जाते है इसमे कार्ड यूज़ करते है और उससे आप अपना अमाउंट डालते है और पैसे निकाल--

ये चित्र एक चाय सेंटर का चित्र है रोहन चाय सेंटर और कॉफी मिलती है यहा पर और गुटके वगेरा मिलते ही यहा पर तो लोग यहा पर चाय का वेट कर रहै है या गुटके लेने का वेट करने के लिए खडे --

ये तसवीर एक खेत की तस्वीर है जहा पर बंद गोबी की खेती हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन ग्रीन बंद गोबी लगे हुए है। खेत--

ये तस्वीरे एक प्लेग्राउंड की तस्वीर है जहा पर लोग क्रिकेट खेलने आते है यहाँ पर एक व्यक्ति बटिंग कर रहा है और एक व्यकती विकेट्किपिंग करता हुआ नजर आ रहा है।

अं भुनने के लिए और साइड मे घास भी रखी हुए है जिसपर ये भुट्टे भुने जाएंगे और ये एक खेत की तस्--

ये एक वेडिंग की तस्वीर है। जहा पर शादी से पहले की तयारी चल रही है। यहापर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है और रेड कलर का कार्पेट लगा हुआ है।

ये चित्र किसी शादी या समारोह का चित्र है जिसमे सारे लोग बैठे हुए है महिलाए और पुरुष सम्मिलित है यहाँ पंडित जी भी बैठे है जो लोगो को कुछ समझा रहे है दो महिलाए खड़ी--